और कोई मामूली सा फंक्शन है कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है जहां पे सिर्फ मर्द हंस रहा थी--

यह फूलों के हार हैं जो अक्सर शादी के मौका पर पहनाए जाते हैं जिसमें एक--

ग्रीन और ब्लू से मिलता जुलता है आसमान बहुत साफ है और सफेद रंग के बादल चाए हुए हैं।

मछली है हो सकता है ये किसी मछली फ्रोश की दुकान है और जहां पर--

और बहुत अच्छा सजाया गया है लोगों को --

अवैलिबल है और यहां पर बैग और कपड़ों की और जूतों की दुकानें मौजूद हैं और --

और भी किस्म के जैसे लोशन्स वगैरा और औ --

और कुछ गाड़ियां सुर्ख और सफेद कलर की हैं ये--

नॉर्दर्न एरियाज में कोई बिल्डिंग लगता है यहां पे --

ये एक योगा सेंटर है यहां पर बहुत से लड़के --

ये एक रेस्टोरेंट है जहां पे काफी टेबल्स लगे हैं लोगों की शक्ल जो है वो ब्लर कर दी गई है।